पीछे एगो महिला बैठल है एगो पाइप है पानी वाला गेल बहुत सुन्दर पार्क लग ला है पीछे पेड़-पौधा है।

पेड़ है पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है और बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा लग रहा है तारुल हे तार-उर है ऊपर में

बहुत सारा नाव है एगो पीयर कलर का नाव है जो टायर लटकायल है एगो आदीवासी हाथ टेढ़ कइले है।

मछली बाजार का सीन है और बहुत सारा मछली सब है एगो औरत बेच रही है एगो बूढ़ा आदमी बेच रहा है बहुत सारे लोग आये हुए है मछली लेने।

और गार्डन बहुत सुंदर है बैठने वाला दुगो है बहुत सुंदर कलर से पेंट किया हुआ है कचरा का डब्बा है एगो।

और पीछे वो टंकी है और पीछे मछली उछली सब है रखल और नीला कलर का चादर बिछाएल है बहुत सुंदर है तस्वीर से बहुत अच्छा-अच्छा है ।

हरियर कलर का माक्स लगाई ले है हाथ में कुछ हवा ऊवा मारे वाला लेले है और पीछे लाइट बहुत जल रहा है और नीचे टाइल्स लग रहा है बहुत दिखाई दे रहा है।